घर है घर में दो-चार मार्केडी लगी हुई है।

यहां पर जिम है जीम में दो मिरर शिशा है ।

उसके जस्ट बगल में ऑरेंज व्हाइट ग्रीन कलर के शटर है ।

घास है बहुत सारा उसके सामने पहाड़ी इलाका है उसके नीचे गिट्टी बिछा हुआ है उसके ऊपर आसमान है आसमान व्हाइट है घास भी बहुत अच्छा --

छह बस के आजु-बाजू में चार पांच आदमी खड़े है एक बस ग्रीन कलर का एक व्हाइट कलर का एक रेड कलर का एक रेड व्हाइट कलर का एक येलो व्हाइट कलर का है उसके जस्ट पीछे पेड़ है पेड़ के ऊपर आसमान है।